यह एक चित्र है चित्र के अंदर कुछ कुर्सियां टेबल देख रहे हैं और दीवाल पे बहोत सारी ड्राइंग बनी हुई दिख रही है कुछ काउंटर भी बना हुआ दिख रहा है।

यह एक चित्र है। इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिख रही है और बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।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

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं आसपास कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बड़ी सी फैक्ट्री दिखाई दे रही है जिसमें कुछ वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये टोस बना रहे हैं।

यह एक चित्र है। चित्र के अंदर बहुत बड़ी क्लास दिख रही है। जिसके अंदर कुछ कुर्सियां टेबल रखे हुए हैं और दो ब्लैक बोर्ड भी लगे हुए दिख रहे हैं।

ये एक चित्र है चित्र के अंदर बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके आस-पास बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हैं और कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।